और इधर वहां कुछ पेपर पन्नी जैसी पड़े हैं।

अह ऐसा खड़ा है जैसे उसकी कोई फोटो ले रहा हो।

एक में तो माक्स ऑक्सीजन जैसा पाइप कुछ लगा दिखाई दे रहा है बॉटल टाइप का।

शॉप है जिसके बाहर दो पानी की टंकी दिखाई दे रही है अह एक हाथ ठेला दिखाई दे रहा है बाइक वगैरा दिखाई दे रही है।

और कुछ पैकेट भी दिखाई दे रहे ऊपर--

सामने ऐसा लग रहा है कि कचरा बहोत सारा पड़ा है।

इधर स्कूटी दिखाइ दे रही बाल्टी दिखाई दे--

पानी का मौसम जैसा दिखाई दे रहा है सब दुर्गीले हां झाड़ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दो आदमी औरत एक औरत या आदमी बात करते दिखाई दे रहे हैं मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है तीन चार--

यहां एक झरना दिख रहा हैं ऐसा लग रहा है पाताल पानी का झरना हैं।

और नीचे घाई जैसी दिख रही है पानी दिख रहा है।

यह एक अ शॉप दिखाई दे रही है जिसमें--

और नीचे भी कुछ केस वगैरा राइटिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम क्लासेस दिख रही है जहां पर कु--

दो आदमियों पीछे भी कुछ आदमी आ दिखाई दे रहे हैं एक आदमी का पेर दिखाई दे रहा है एक डबल --

दूल्हे की कार दिख रही है जैसे कि अ सजी हुई दूल्हे की कार सजाते हैं उस टाइप से--

यह एक बैंक हैं बंधन बैंक ए_टी_एम भीं हैं साइड में उसके।

मोटरसाइकल है फिर अंब्रेला टेंट है एक बोतल पड़ी हुई दिखाई दे रही नीचे कांच की। स्कूटी है एक आदमी स्कूटी बे

आ अ सभी प्रकार का सामान दिखाई दे रहा हैं रेडियो वगैरा हेडफोन कैमरा ।

अह ढोलक वगैरा फीस की अह वो है स्टैचू अह पियानो है सब पुतले बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं।

अं कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सच--

हा पाताल पानी का झरना जैसा दिख रहा है इसकी कॉपी है।

यह एक अह जो टॉवर आता है--

अं रेड काफी द काफी ये कैफे है।

कुछ बोर्ड्स भी दिखाई दे रहा है लैपटॉप है कुर्सियां दिखाई दे रही हैं माउस दिखाई दे रहे।

सर टीचर्स हैं फोटो जैसा ऐसा लगा रहा हैं खिंचवा रहें हो।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और पानी का मौसम दिख रहा है शाम हो रही है जैसे-जैसे लग रहा है।

यह एक गौशाला जैसा दिखाई दे रहा है तबेला हो जैसे--

गाय दिख रही है आह कुछ लोहे के खम्बे लगे दिख रहे है बाउंड्री दिखाई दे रही है।